हुयी हैं और पीछे दीवार दिख रही है जो की ऑरेंज कलर की और पिंक येलो कलर की पुती हुई है और यहां पर पीछे ब बॉडीबिल्डिंग की मशीन रखीं हुई --

वहां पर ड्रेस में एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ है जो --

जहां बहोत सारे बच्चे बैठे हुए कॉपी किताब में लिख रहे हैं कुछ अभी बच्चे प्रॉपर ड्रेस में हैं कुछ गर्ल्स बैठी हुई है और एक टीचर खड़ी हुई है जो की चश्मा लगाए हुए एक गेट है यहां पर जो खुला हुआ है यहां से बाहर से रोशनी आ रही है पीछे --

उधर फेविकॉल लगा हुआ है और इन्होंने एक जैसी ड्रेस पहनी कोई बच्चे खड़े होकर एंडिंग कर रहे हैं और अब इनके पीछे खिड़कियां दिख रही है जो की जिसमें जाली लगी हुई है।

खुशी से यहाँ पर बहोत सारे लोग और एक लड़की को कोई सा अवार्ड दे रहा है और वह लड़की ने बाल खोले हुए हैं और और एक सूट पहनी हुई है ब्लू कलर --

लैब है जहाँ पर दो चार पांच बॉडी रखी हुई है जोकि सड़ रही है और एक पांच चार है जोकि --

ये एक तालाब है जहाँ पर बहोत सारे लोग बोटिंग कर रहे हैं और यहाँ पर तरह-तरह के बोट दिख रही हैं रंग बिरंगे जो रात का समय है और डबल लाइटे दिख रही हैं।